जहां पे लिखा है पिक्चर गैलरी टेक अवे --

यह फोटो एक सड़क की है।

की है और ओवरब्रिज के ऊपर अ दो ऑटो एक मोटरसाइकल वाला जाते हुए दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे काफी सारे जिम में इक्विपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी--

और पेंडरी के आगे काफी सारे लोग स्टेज में खड़े हुए नजर आ रहे है।

हॉस्पिटल नजर आ रहा है हॉस्पिटल के बाहर एक एंबुलेंस खड़ा हुआ है।

फोटो में एक कमरा दिखाई दे रहे है और कमरे में एक--

मसूर छोले कुलछे घर घर --

यहा पे काफी सारे डबल बेड्स लगे है।

यह फोटो एक शादी की फोटो नजर आ रही है।

यह फोटो एक रेलवे स्टेशन का फोटो है।

टैंक और या कह लीजिए तोप रखा हुआ है मिलिट्री तोप और --

चारों तरफ से बड़े-बड़े ऊंचे-ऊंचे पेड़ है।

दिखाई दे रहे हैं पार्क का ग्राउंड दो हिस्सों में बटा हुआ है और यहां पे बच्चों को खेलने के लिए--

गोदाम के बाहर एक ट्रक खड़ा है और दो मोटरसाइकिल खड़ा नजर आ रहा है।

हरे किशन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली इंग्लिश मीडियम ।

इस फोटो में एक टायर की दुकान दिखाई दे रही है।

लाइट लाइट और एक फैन नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग में दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के अंदर--

ऑटो रिक्शा ठीक करने का काम कर रहा है।

और किताब की दुकान के ऊपर लिखा है प्रगति बुक सेंटर--

इस फोटो में एक गराज नजर आ रहा है गैरेज के अंदर एक--

इस फोटो में एक होटल का बाहर का नजारा दिख रहा है।

ज्वेलर की शॉप के नाम है बाबा ज्वेलर्स ।

काफी सारे स्वीट्स लड्डू मिठाई चिप्स आदि दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड नजर आ रहा है प्लेग्राउंड में काफी सारे बच्चे--

यह टाइम सूर्यास्त का है सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा है।

बाहर ढाबा नजर आ रहा है।

विशाल मेगामोट दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे घर की डेली की जरूरत के सामान मैगी बिस्किट सर्फ साबुन--

और डेंटल क्लीनिक का नाम है डेंटल --

इस फोटो में एक बाड़ नजर आ रहा है इस बाड़ के--

इस फोटो में एक स्टोर की फोटो नजर आ रही है स्टोर के बोर्ड पे लिखा हुआ है श्याम आयुर्वेदिक स्टोर ।

इस फोटो में एक बहुत बड़ी पार्क नजर आ रही है पार्क में कुछ लोग टहल रहे हैं और इस पार्क में--

और किताब के दुकान के ऊपर बुक रिपोर्ट --

और बाहर एक फ्रूट की दुकान नजर आ रही है यहाँ से दो से तीन लोग खड़े हुए हैं।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के साथ काफी सारे--

ताल ताड़ के पेड़ नजर आ रहे हैं और छोटे छोटे फूल पौधे भी नजर आ रहे है।

इस फोटो में एक बहुत ग्राउंड खड़ी नजर आ रही है।

और ग्राउंड के साथ एक व्हाइट कलर की कार और उसके पीछे एक वैन खड़ी नजर आ रही है।

काफी कुछ सामान स्टॉल पे सजा के रखा हुआ है।

बहोत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं गमले में और लाइट्स और फैन नजर आ रहे हैं।

अ दो दुकाने नजर आ रही है जहां दुकान के ऊपर लिखा हुआ है शिव शक्ति हैंड हैंडलूम और बिंदाल--

और सबसे नीचे शिप शक्ति हैंडलूम बड़े पोस्टर में नजर आ रहे हैं।

क स्कर्ट टॉप सारे सामान लेडीज के रखे हुए हैं।

यह एक पथरेले चट्टान की फोटो है।

यहाँ पे एक आदमी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है।

पार्क में एक बच्चा खड़ा दिख रहा है और काफी सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और एक--

इस फोटो में एक हॉस्पिटल नजर आ रहा हैं।

हॉस्पिटल के ऊपर बहोत बड़े एक इन साइन वर्ड लिखा हुआ है जिसमें इमर्जेंसी लिखा हुआ है।

यह एक बच्चों का खेलने का प्लेग्राउंड नजर आ रहा है।

एक बहुत बड़ी ब्रिज नजर आ रही है और ब्रिज के--

डीजल मिलता है और साथ में दूसरे एक दूर एक ट्रक खड़ा नजर आ रहा है।